जिसमें कुछ व्यक्ति महिलाएं दिखाई दे रही है।

कुछ टॉयलेट का समान है कुछ किचन का समान है।

साइड में एक साइकिल खड़ी हुई है और एक बड़ा सा पोस्टर भी दिखायी दे रहा है।

यह एक बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट है।

जिसमें काम चल रहा है कुछ बड़े बड़े अलग से समान दिखाई दे रहे हैं।

यह एक स्कूल है जिसमें मुझे अंदर मेज कुर्सी दिखाई दे रही है।

जिसके बाहर कुछ बाइके कार व्यक्ति महिलाएं दिखाई दे रही हैं।

यह एक बहोत ही अच्छा चित्र है सामने की ओर एक बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है।

और अंदर कुछ टूटा फूटा सामान भी दिखाई दे रहा है।

कुछ लाइटें जल रही हैं और ऊपर टीन कि छत पड़ी हुई है।

और एक कार खड़ी हुई है और एक बिजली का खंबा भी दिखाई दे रहा है।

जिसमें फर्नीचर ने एक सोफा तैयार किया हुआ है।

यह एक कार रिपेयरिंग वाले की दुकान है।

कुछ व्यक्ति अंदर है बाहर रिक्शा ऑटो दिखाई दे रही है।

और कुछ कुर्सी पंखे लाइटें दिखाई दे रही हैं और बहुत ही अच्छे से मंदिर सजा हुआ है।

और अंदर कुछ कुर्सियां पंखे दिखाई दे रहे हैं और शीशे भी लगे हुए हैं।

यह एक बहोत ही अच्छा चित्र है जिसमें मुझे कुछ पिलर दिखाई दे रहे हैं।

और सामने कुछ व्यक्ति महिलाए दिखाई दे रहे हैं।

और एक बड़ा सा बीम भी दिखाई दे रहा है।

और बाहर शीशे के क्वाड भी दिखाई दे रही है।

और ऊपर एक कैमरा और लाइट दिखाई दे रही है।

और शीशे में ओ कई सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।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

पीछे एक ए_सी बोर्ड दिखाई दे रहा है।